सामने एक रोड दिखाई दे रहा यहां पर बहुत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे यहां पर एक का भी दिखाई दे रही --